और कोई कोई आदमी जमीन पर बैठा हुआ है।

इन झोपड़ी के आगे तीन बाइक लगे हुए हैं और यहां पे घर के आगे कचड़ा लगा हुआ है।

ये बहोत सारे कपरे रखे हुए हैं और यहां पे एक पोस्टर रखा हुआ है और तीन कुर्सियां है।

साइकिल में घर की ओर जा रहे हैं एक उस स्कूटी भी लगा हुआ है उसके बगल में एक आदमी--

और रेड कलर का कचरे का डस्टबिन भी र--

इसमें और व्हाइट कलर का भी गेट है।